यहां पे गानों को रिकॉर्ड किया जाता हैं।

और यहां पे दो लोग कुर्सियों पे बैठे हुए हैं।

और उनमें यहां पे पौधे लगाए गए--

और यहां पे फैन भी दिख रहा है।

ये एक यहां पे बड़ा सा पहाड़ी इलाका दिख रहा है।

सामने वहां पे एक ग्रीन कलर के पानी का पूल है यहां पे बड़े से की तरह दिख रहा है।

पीछे वहां पे गाड़ियां है लाइट के फोकसस है बड़े बड़े झाडा भी है।

हरे भरे घांस उठी हुई है।

और बहोत सारे यहां पे पर्दे मारे गए--

टेबल पे बहोत सारे सामान है।

यहां पे लगाया गया यहां पे वायर भी दिख रहा है।

हाथी के पुतले है सोफा पर--

ये एक यहां पे बेडरूम दिख रहा है।

कपड़े भी है और बहुत सारे बड़े बड़े बहुत पाउडर डब्बे भी है।

टाइल्स की दुकान दिख रही है आजु बाजू भी यहां दुकानें हैं और यहां बहुत सारे--

और यहाँ पे एक बड़ा सा--

आजू बाजू यहां पे बहोत सारे--

बहोत सारे बड़े बड़े झाड़ा भी--